यह चित्र क्लीनिंग मैटेरियल्स का लग रहा है यहां पर क्लीनिंग झाड़ू--

स्विमिंग पूल भी होगा। यहाँ यह बहोत बढ़िया हैं और हमे यहाँ विजिट भी करना चाहिए।

और रोड पर सफेद कलर से कुछ लिखा हुआ--

बिल्डिंग का चित्र है इसमें दो आदमी गाड़ी पर जा रहे हैं।

रोड गीला है ऊपर नीला आसमान लग रहा है।